जहां एक मॉल है जिसके आगे रेड बोर्ड पे वी टू लिखा हुआ है।

इसके पीछे बहोत सारी छोटी छोटी जाप अ झोपड़ी भी नजर आ रही है।

यहां पे बहोत सारे स्टूडेंट टाइप के बच्चे दिख रहे हैं।

जोकि उनकी बातों को सुन रहे यहां पे अ वॉल वॉच भी लगा हुआ है।

चीजें जो हैं वो बहोत लम्बे प्लेस में फैली हुईं नजर आ रही है और इसके आगे भी एक फील्ड है जिसमें मिट्टीस भरी है।

और यहां की जो पत्तियां है वो ग्रीन कलर की है ये जो स्टेज का डेकोरेशन है वो बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है।